फोटो किसी रास्ते का लग रहा है जहां पर एक ऊपर साइड में टंकी दिखाई दे रही है।

यह फोटो किसी जिम का है जहां की मादमी ने एक सेल्फी ली है और पीछे एक लेडीज भी दिखाई दे रही है।

और जिसने फोटो लिया है वो कहीं घर पर खड़ा हुआ है और उसके घर में--

पीछे एक ट्रेन भी जा रही है पीछे बहोत सारे खंभे पटड़ी दिखाई दे रही है और पीछे बहोत भारी मात्रा--

यह फोटो कही इमारत का लिया गया है जहां पर दो काली टंकी दिखाई दे रही है एक पर ढक्कन है और एक पे ढक्कन नहीं है और एक आदमी--

यह फोटो किसी क्लास रूम का लग रहा है जहां पर बहुत सारे बच्चे--

और इस क्लास रूम में दो दरवाजे भी हैं और दीवारों पर बहुत सारे पोस्टर भी लगाए गए हैं।

यहां पर एक जीना भी है और सामने दो एल_ई_डी भी लगाई गई है।